लाल पियर हरिहर लउकता। आदमी ठाड़ बा। उज्जर कपड़ा पहिनले बा।

दिया रख ता आदमी देखता उजर कपड़ा पहनले बा नीला पहनले बा।

फुल के दुकान लउकता थारा भइल बा आदमी उजड़ कपड़ा पहनेल बा।